जमोल एप्लीकेशन में सरफेस एंड ऑर्बिटल्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक अणुओं के मॉडल्स बनाना
अणुओं की भिन्न सरफसेस दिखाना
परमाण्विक और आणविक ऑर्बिटल्स दिखाना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि जमोल एप्लीकेशन में आणविक मॉडल्स को कैसे बनायें और एडिट करें
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 और जावा वर्जन 7 मैंने एक नयी जमोल एप्लीकेशन विंडो खोली है
अब सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का मॉडल बनाते हैं
मॉडलकिट मेन्यू पर क्लिक करें
पैनल पर मेथेन का मॉडल दिखाई देता है
साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए हमें छः कार्बन परमाणुओं की हाइड्रोकार्बन चेन बनानी है
हम मॉडल में हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलेंगे
ऐसा करने के लिए हम हाइड्रोजन पर कर्सर रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे
स्क्रीन पर यह इथेन का मॉडल है
यह स्टेप दो बार और दोहराएं और एक बार में एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलें
हाइड्रोजन्स पर इस प्रकार क्लिक करें कि स्ट्रक्चर एक वृत्त बनाये
अब रोटेट मॉलिक्यूल टूल प्रयोग करके स्क्रीन पर स्ट्रक्चर को घुमाएं
पैनल पर यह ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है
मॉडलकिट मेन्यू पर क्लिक करें
चेन के अंत में उपलब्ध किसी भी कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन पर क्लिक करें
यह पैनल पर पेन्टेन का मॉडल है
हाइड्रोजन्स में से किसी एक पर क्लिक करें जो कि कार्बन चेन के अंत के निकट है
पैनल पर साइक्लोहेक्सेन का मॉडल बनाया गया है
स्ट्रक्चर को उपयुक्त बनाने के लिए मॉडलकिट मेन्यू में मिनिमाइज़ विकल्प का प्रयोग करें
अब साइक्लोहेक्सेन का मॉडल अपनी सर्वाधिक स्थिर चेयर कान्फॉर्मेशन में है
वैकल्पिक रूप से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम मॉडलकिट मेन्यू में ड्रैग टो बोंड विकल्प भी प्रयोग कर सकते हैं
इस विशेषता को दर्शाने के लिए मैं पेन्टेन का मॉडल प्रयोग करुँगी
पैनल पर यह पेन्टेन का मॉडल है
इसको साइक्लोपेंटेन में बदलने के लिए मॉडलकिट मेन्यू से ड्रैग टो बोंड विकल्प सिलेक्ट करें
कर्सर को चेन के एक सिरे पर उपलब्ध कार्बन पर रखते हैं
माउस बटन को पकड़ें
माउस बटन को बिना छोड़े कर्सर को चेन के दूसरे सिरे पर उपलब्ध कार्बन तक लाएं
अब माउस बटन छोड़ दें
पैनल पर हमारे पास साइक्लोपेंटेन का मॉडल है
अब साइक्लोहेक्सेन के मॉडल के साथ जमोल पैनल पर वापस जाते हैं
अब साइक्लोहेक्सेन को बेंज़ीन रिंग में बदलते हैं
हमें साइक्लोहेक्सेन रिंग में ऑल्टर्नेट पोज़ीशन पर डबल बॉन्ड्स लगाने हैं
मॉडलकिट मेन्यू खोलें
किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच कर्सर रखें और उस पर क्लिक करें
अब हमारे पास पैनल पर साइक्लोहेक्सीन है
आगे इसको बेंज़ीन में बदलने के लिए हमें स्ट्रक्चर में दो और डबल बॉन्ड्स लगाने की ज़रूरत है
अगले दो ऑल्टर्नेट कार्बन परमाणुओं के बीच वाले बॉन्ड पर क्लिक करें
पैनल पर हमारे पास बेंज़ीन का मॉडल है
स्थिर कान्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करें
अणुओं की सरफेस टोपोलॉजी जमोल एप्लीकेशन प्रयोग करके दिखाई जा सकती है
भिन्न सरफेसेस देखने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें
निश्चित कर लें कि मॉडलकिट मेन्यू बंद हो गया है अगर यह खुला हो
अब पॉप अप मेन्यू खोलने के लिए पैनल पर राइट क्लिक करें
नीचे जाएँ और सरफेस सिलेक्ट करें
अनेक विकल्पों के साथ एक सब मेन्यू खुलता है
डॉट सरफेस वन डेर वाल्स और कुछ अन्य
प्रदर्शन के लिए मैं मॉलिक्यूलर सरफेस सिलेक्ट करुँगी
बेंज़ीन का मॉडल मॉलिक्यूलर सरफेस के साथ प्रदर्शित होता है
अब इसे एक अन्य सरफेस माना डॉट सरफेस में बदलते हैं
अतः पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें और डॉट सरफेस चुनें
हम सरफेसेस को ओपेक अपारदर्शी या ट्रांस्लूसेंट भी बना सकते हैं
ऐसा करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें
सरफेस तक नीचे जाएँ और मेक ओपाक विकल्प सिलेक्ट चुनें
देखें कि बेंज़ीन मॉडल ओपेक हो गया है
सरफेस विकल्प को बंद करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें सरफेस चुनें
ओफ तक नीचे जाएँ और इस पर क्लिक करें
अब बिना किसी सरफेस के हमारे पर बेंज़ीन का मॉडल है
जमोल अणुओं के आणविक और परमाण्विक ऑर्बिटल्स दर्शा सकता है
कॉन्सोल पर कमांड्स लिख कर स्क्रीन पर परमाण्विक ऑर्बिटल्स दिखाए जा सकते हैं
फाइल और न्यू पर क्लिक करके एक नयी जमोल विंडो खोलें
अब फाइल और फिर कॉन्सोल पर क्लिक करके कॉन्सोल विंडो खोलें
स्क्रीन पर कॉन्सोल विंडो खुलती है
कॉन्सोल विंडो को मैग्निफाइ करने के लिए मैं कमाग स्क्रीन मैग्निफायर प्रयोग कर रही हूँ
परमाण्विक ऑर्बिटल्स के लिए कमांड लाइन आइसोसरफेस फेज एटोमिकॉर्बिटल से शुरू होती है
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें आइसोसरफेस फेज एटोमिक ओर्बिटल यह क्वांटम नंबर्स एन ल और एम के बाद आता है जो प्रत्येक परमाण्विक ऑर्बिटल के लिए विशिष्ट होते हैं
एस ऑर्बिटल को दर्शाने के लिए टाइप करें 2 0 0 नंबर्स 2 0 0 क्रमशः एन ल और एम क्वांटम नंबर्स को दर्शाते हैं
कमांड को निष्पादित करने के लिए एंटर की दबाएं
हमारे पास पैनल पर एस ऑर्बिटल प्रदर्शित हुआ है
यहाँ परमाणविक ऑर्बिटल्स और सम्बंधित स्क्रिप्ट कमांड्स के कुछ और उदाहरण हैं
कमांड लाइन सभी परमाणविक ऑर्बिटल्स के लिए समान हैं
कॉन्सोल पर पिछली कमांड दिखाने के लिए कीबोर्ड पर अप एरो की दबाएं
क्वांटम नंबर्स एन ल और एम को एडिट कर 2 1 1 करें
एंटर की दबाएं और जमोल पैनल पर पीक्स ऑर्बिटल देखें
अप एरो की दोबारा दबाएं और एन ल और एम को एडिट कर 3 2 और 1 करें
एंटर की दबाएं और जमोल पैनल पर डीएक्सी ऑर्बिटल देखें
हम इन इमेजों को भिन्न फाइल फोर्मट्स जैसे जेपीजी पंग और पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं
यहाँ सारे परमाणविक ऑर्बिटल्स के लिए कमांड्स की एक सूची है एस प डी और फ़ इस स्लाइड पर दिखाए गए मॉडल्स परमाणविक ऑर्बिटल्स के हैं
ये कॉन्सोल पर लिखे स्क्रिप्ट कमांड्स की मदद से बनाये गए थे
यहाँ मैंने एक नया जमोल पैनल और कॉन्सोल खोला है यह दिखाने के लिए कि आणविक ऑर्बिटल्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं
जमोल प्रयोग करके हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल्स जैसे एसपी3 एसपी2 और एसपी प्रदर्शित किये जा सकते हैं
हमारे पास पैनल पर मीथेन का मॉडल है
मीथेन एसपी3 टाइप के आणविक ऑर्बिटल्स रखता है
लिनियर कॉम्बिनेशन ओएफ एटोमिक ऑर्बिटल्स यानि एलसीएओ मेथड आणविक ऑर्बिटल्स बनाने के लिए प्रयोग होता है
अतः कमांड लाइन ल्काओकार्टून के बाद क्रिएट और ऑर्बिटल के नाम के साथ शुरू होती है
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें ल्काओकार्टून क्रिएट एसपी3 एंटर दबाएं
एसपी3 हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल्स के साथ मीथेन का मॉडल देखें
एसपी2 हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल्स को देखने के लिए हम उदाहरण में इथीन लेंगे
पैनल पर यह इथीन का अणु है
इथीन अणु तीन एसपी2 हाइब्रिडाइज्ड आणविक ऑर्बिटल रखता है
उनके नाम sp2आ sp2ब और sp2सी हैं
डॉलर प्रॉम्प्ट पर टाइप करें ल्काओकार्टून क्रिएट sp2आ एंटर दबाएं
पैनल पर इथीन मॉडल पर एसपी2 ऑर्बिटल देखें
अप एरो की दबाएं और sp2आ को sp2ब से बदलें एंटर दबाएं
दोबारा अप एरो की दबाएं और sp2ब को sp2सी से बदलें एंटर दबाएं
अंततः पी बोंड के लिए ऑर्बिटल का नाम एडिट कर पीज़ करें
पैनल पर सारे आणविक ऑर्बिटल्स के साथ हमारे पास इथीन अणु है
यह स्लाइड आणविक ऑर्बिटल्स के साथ कुछ अन्य अणुओं के उदाहरण दिखाती है
अधिक जानकारी के लिए जमोल स्क्रिप्ट डॉक्युमेंटेशन की वेबसाइट देखें
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन के मॉडल बनाना
बेंजीन का मॉडल बनाना
अणुओं की सरफेस टोपोलॉजी दिखाना
हमने निम्न भी सीखा परमाणविक ऑर्बिटल्स एस प डी फ़ दर्शाना
कॉन्सोल पर स्क्रिप्ट कमांड्स लिखकर आणविक ऑर्बिटल्स एसपी3 एसपी2 एंड एसपी दर्शाना
यहाँ एक नियत कार्य है 2 बुटेने का मॉडल बनायें और आणविक ऑर्बिटल्स दर्शाएं
आणविक ऑर्बिटल्स के रंग और साइज को बदलने के लिए ल्काओकार्टून कमांड जाँचें
कमांड्स की सूची के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद